एक लोग बैठे हुए है एक कोई बात कर रहे हैं और कई मिरर भी लगे हुए है।

तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का बाहरी दृश्य दिखाई दे रहे--

पंडाल का कलर वाइट या फिर रेड है।

ये पूरा सजाया हुआ है यहां पे कई लोग है।

कुछ लड़कियां अपने पैरों को पकड़ कर व्यायाम कर रहे हैं।

एक कार और दो बाइक वाले भी दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति मशीन को कंट्रोल कर रहा है।

तस्वीर में एक रूम का दिखाई दे रहा है।

सामने ही दो आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक खेल के मैदान दिखाई दे रहे हैं यहां कई खिलाड़ी लाल और नीले टी_शर्ट पहनकर अभ्यास कर रहे हैं।

इसके बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़े हैं और कुछ लोग अंदर भी जा रहे हैं।

नदी कई फुट लंबा भी हो सकते हैं और गहरा भी।

चित्र में एक महल का दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो बड़े बड़े इमात्रो से बने हुए हैं।

एक आधार नामकरण एवं अदंत केंद्र का संकेत बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ।

काफी बच्चे महिला और पुरुष भी दिखाई दे रहे है।

पीछे एक प्लास्टर का दीवाल दिखाई दे रहा है ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है।

घास से बना हुआ कुछ हाथी नजर आ रहे हैं।